ऊपर बड़े पेड़ दिख रहे हैं एक सड़क दिख रही हैं जिसके किनारे खूब सारी मिट्टी हैं।

कुछ पानी की बोटले रखी हैं नीले कलर की।

दूसरे ने भी जीन्स टॉप पहने है और तीसरे ने भी जीन्स टॉप पहने है नीचे का फ्लोर काला है।

और लहसुन है और उनका तराजू रखा हुआ है।

दो तीन हां दो तीन झोपड़ी सी दिख रही हैं हट सी दिख रही हैंजो की पत्थर से बनी हुई हैं ब्राउन कलर --

और उन डेस्क में बहुत सारी ड्रावर भी हैं।

एक कमरा हैं जहाँ पर क्रीम और लाल कलर से आधे-आधे मे पेंट हैं कुछ गमले रखे हुए हैं जिनमें कुछ पौधे उगे हुए है।

जो सजावट के निचे वो लोग बातचीत कर रही है एक अंकल यहाँ-वहां देख रहे है।

पढ़ने लिखने की सारी चीजें मिलती हैं वहां एक अंकल है जिन्होंने लाल टी-शर्ट पहनी हुई है।